ईद के अवसर पर यहाँ मेला लगा हुआ है। यहाँ से अपने सभी परिवार लोग आए देखने के लिए एक कुछ परिवार अपने बच्चे के साथ आए है बच्चों के खिलौने और खिलौने लिए हुए और--

यह एक क्लिनिक है और इस क्लिनिक का नाम सिमरन क्लिनिक है जो डॉक्टर एल.बी. प्रसाद के द्वारा चलाया जाता है । उनका एम.बी.बी.एस. एम.डी. पीडिया चाइल्ड इन फिजिशियन सभी लोग अपना ईलाज कराते हैं और यह इसका जो खुलने का समय है टाइम दस ए.एम. से चार पी.एम. तक चलता --

यह एक दुकान है और इस दुकान पर आज चारों तरफ़ सजावट किया गया है यह दुकान अमूल दूध का दुकान है और इछके बाहर बहोत सारी पोस्टर लगे हुए --

यह एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का नाम आरोग्या हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल के बाहर पेड़ हैं और परिवाहन कुछ रखे हुए हैं लोग अपना आवा-जाही कर रहे हैं और कुछ लोग इलाज़ करने के लिए भी जा रहे हैं और आ रहे हैं ।